पुराना लग रहा है नीचे से नीचे में एक टंकी रखा हुआ है वाइट कलर का। साइड साइड से बोहत सारे हरे भरे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। और ये शायद स्कूल है किसी चीज का --

और लाइट लाइट जल रहा है। लाइटिंग बहुत अच्छी हैं। ऊपर आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा है|

झूला भी है बहुत सारा झूला है ब्लू पीला नारंगी हर कलर का--